ये देख और ऊपर आसमान भी दिख रहा एकदम काला।

कुर्सियां लगी हुई हैं बहोत सारी। जिसका रंग सफ़ेद है और लाल है और सामने काउन्टर लगें हुऐ हैं। वहाॅं पे खाना चल रहा हैं। उसका रंग सफ़ेद है और पीला है।

यहाॅं पे एक स्तम्भ बनाया गया है पिलर के रूप में। जिसका कलर पीला है। नीचे व्हाइट कलर की पट्टी लागई गई। जिसका रंग सफ़ेद हैं औरअगल- बगल लाइटिंग की गयी हैं। उसका रंग सफ़ेद --

यहां पे कार्यक्रम हो रहा है जहां पे खाने का काउंटर लगा लगा हुआ है। और बर्तन रखे हुए हैं।